चेक पोस भी है और सनसेट का नजारा भी दिखाई दे रहा है।

दो बैग भी रखा है।

ऊपर में साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

पानी का अंदर तीन आदमी बैठा हुआ है।

इस में ट्वेंटी किलोमीटर स्पीड लिमिट लिखा हुआ है।

इस फोटो मे जगह दिखाई दे रहे हैं उसमें एक गाड़ी रखा हुआ है।

आदमी भी दिखाई दे रहे एक घर भी है।

में ग्रीन कलर का कुछ लिखा हुआ हैं।

ये एक बुद्धिस्ट का स्टेचू है।

एक शादी का माल दिखाई दे रहा है आदमी लोग भी हैं।

भगवान का फोटो दिखाई दे रही है।

ये चूहे हैं छोटा सा बास्केट भी है।

ग्रीन भी है और येलो कलर भी है कपड़ा भी दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजा भी है सीढ़ी भी है बाहर में फ्लावर भी है।

यह इसमें घर दिखाई दे रहा है।

घर के पीछे में बहुत सारा पेड़ पहाड़ दिखाई दे रही है।

कपड़ा भी दिखाई दे रहे हैं घर भी इटा से बना हुआ है।

घर भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारा पेड़ भी है और वॉल भी दिखाई दे रहे हैं।